दोनों साइड में रेड कलर के बोर्ड लगे हुए हैं।

बाहर साइड में एक बैग और कुछ सामान रखा है।

यहां के फर्श पर वाइट और ब्लैक कलर की टाईलिंग है।

डाक्टर सौम्या सक्सेना लिखा हुआ है।

यहां पर एक बोर्ड लगा है जिस पर प्रिपेयर आई_ए_एस मॉक इंटरव्यू सेशन लिखा हुआ है।

एक आदमी मास्क लगाए हुए जो कि फोन पड़े हुए हैं।

एक इंसान धागों में माला पिरा के रख रहा है और सामने कुछ फूलों की माला टंगी हुई है।

दूर एक येलो कलर की बस दिख रही है ज़िस पर ब्लू ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

एक येलो कलर का ड्रम और एक हरे कलर की बाल्टी रखी हुई है।

इसको व्हाइट कलर से पेंट किया गया है और ब्लू कलर से लाइनिंग की गई है।

नीचे दो चेयर रखी हुई है एक लकड़ी की टेबल रखी है।

बीच में सीधा रास्ता है जो गेट के बिल्डिंग का तक जाता है।

और कुछ लैंप भी लगे हैं रोड के दोनों साइड ।

उपर से एक ब्रिज भी निकला है जोकि लोहे का है।

बहोत दूर पेड़ भी लगे हैं बहोत बड़े बड़े से और कुछ घर भी नजर आ रहे हैं।

पीछे एक बड़ा व्हाइट टावर और ग्रीन पेड़ दिख रहे हैं।

एक आदमी खड़ा है जिसने दो तीन कलर के टी शर्ट पहनी है ब्लैक कलर की।

ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है।

इस फोटो में दो बच्चे दिख रहे हैं जो कि शायद डांस कर रहे हैं।

और नीचे तीन बैठने वाली चीज रखी है उस पर तीन और एक बैलून और दो गेंद रखी है।

एस्केलेटर भी दिख रहा है एक कैमरा नजर आ रहा है।

दूर ब्लू और ब्लैक डस्टबिन और पास में एलो रेड कलर का।

साइड में एक झोला रखा है येलो और ब्राऊन कलर कि कोई सब्जी रखी हुई है।

नीचे ए_सी लगी है और यहां पर जीने के चढ़ने पर रेलिंग लगी है दो लोग खड़े हैं।

ऊपर एक झूमर दिख रहा है एक रॉड जल रही है।

जिसमें एक पनीर का स्लाइस और नींबू और एक आलू की टिक्की और कुछ वेजिटेबल्स रखी हैं।

पीछे जीसस का साइन बना हुआ है एक आंटी ने साड़ी पहनी हुई है।

यहां पर बहोत सारे स्कूल के बैग दिख रहे हैं।

पीछे लकड़ी की डीलिये रखी हुई हैं जिसमें केले और भी फ्रूट दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक नर्सरी नजर आ रही है।

ब्लैक कलर के लोहे के डंडे लगे हुए हैं।

ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा दे रहा लगता है।

और नीचे घास भी दिख रही है हरी हरी रोड पर पानी भी दिख रहा है।